यह एक पार्लर है जहाँ पे --

एक युवक सामने खड़ा हाथ में मोबाईल पकड़े --

जिसको सफेद रंग किया हुआ है।

और भी लाइटे लगी हुई हैं पंखे लगे हुए हैं।

यह एक पहाड़ी है जहाँ पे एक प्राचीन दीवारें बनी हुई हैं।

यहाँ एक कमरे में बहुत सारे लोग कुर्सियों में कतार में बैठें हैं।

और दीवार के पास एक वृक्ष है।

ट्रेडमिल के पास एक थम है जिसके ऊपर --

लोग खड़े हैं और दो युवक अपनी तस्वीर ले रहे हैं।

एक युवती एक बच्चे को गोद लिए खड़ी है।

पास अ भगवान शिव जी की मूर्ति है और हनुमान जी की मूर्ति भी है।

टेबल के ऊपर वजन नापने की मशीन है।

और उसने एक नीले रंग का कपड़ा ओढा हुआ है।

वृक्ष के पास एक यु-युवक खड़ा है।

गेट लगा हुआ है गेट को काला और सफेद रंग किया हुआ है।

यहाँ पे जूतों की सेल लगी हुई है।

उसके पीछे जिम का सामान पड़ा हुआ है।